आसमान दिखाई दे रहा है पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं घास दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंग दे रही है जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर पूता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर आसमान दिखाई दे रहा है पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

सेब दिखाई दे रहे है बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमे व्हाइट कलर का पेंट पुता हुआ दिखाई दे रहा है।

पिंक एंड व्हाइट कलर की --